टाइल देखने में हमें बहुत सुंदर दिख रही है बहुत ही अच्छी--

खुला एरिया दिख रहा है पीछे गेट लगा हु--

यहां पर एक ये सामने पानी का वो दिख रहा है।